पर्दा दिख रहा है पंखा लटका दिख रहा --

पीछे हरा पेर पौधा दिख रहा है।

बच्चे नृत्य सीख रहे हैं नीचे फर्स दिख रहा है।

कपड़ा सब रखा हुआ दिख रहा है।

लड़का काला जूता पहना है।

ये तस्वीर में बहुत लड़कियां दिख रही है।

बाहर हरा पेड़ पौधा दिख रहा है।

बहुत सारा लाइटें जल रहा है।

बहुत सारी चट्टान भी हैं।

पंछी काला दिख रहा है।

एक आदमी कुर्सी पे बैठा है।

बहुत टेबल और डेक्स दिख रहा है।

आसमान सफेद दिख रहा है।

एक खाने की थाली दिख रही है।

थाली में चावल रखा हुआ है।

बहुत लोग दिख रहे हैं।

मैगी ऑयल रखा हुआ है।

यह तस्वीर में बहुत हरा पेर पौधा दिख रहा है।

बहुत सारा टेबल दिख रहा है ऊपर पंखा चल रहा है।

सामने बरा मकान दिख रहा है मकान चार मंजिला है।

एक बड़ा दीवार दिख रहा है दीवार में लोहे का ग्रिल लगा हुआ है।

सामने बरा और चौड़ा सरक दिख रहा है।

सरक बस किनारे पानी गिरा हुआ है।

काफी हरा भरा दृश्य है।

दो कछुआ जमीन पे चल रहा है।

सभी लोग फूल बेच रहे हैं।

लड़का खड़ा दिख रहा है।